पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

ए काले कलर की कुर्सी दिखाई दे रही है।

बैंगन भी हमें दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक क्लब का दृश्य दिखाई दे रहा है।

दुकान के पास एक बंदा दिखाई दे रहा है।

हरियाली दिखाई दे रही हैं।

हमें यहां पर एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है।